चित्र में एक थाली दिखाई दे रही है जिसमें खाने के लिए बहुत ही सुंदर व्यंजन दिख रहे हैं जिस--

इस चित्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप दिखाई दे रही है जहां पे उसके उपर नीले कलर से--

कॉफी देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है।